तथा एक कुछ रेक जैसा बनाया गया है एक लाईट लगी हुई है जो उजाला कर रही है पीछे कुर्शी जैसा कुछ दिखाई दे रहा है एक हरा कलर का डेस्क जैसा कुछ दिखाई दे रहा है।

निचे एक गा सफ़ेद गाडिया दिखाय दे रही हैजो सिल्वर कलर की गाडिया दिखाय दे रही हैपीछे एक पंखा भी दिखाय दे रहा हैपीछे की इवल का कलर सफ़ेद हैनिचे कारपेट जैसा कुछ बिछा हुआ--

यहा पर कुछ व्यक्ति दिखाई दे रहे है कुछ व्यक्ति खड़े हुए है तथा कुछ झुके हुए व्यक्ति भी दिखाई दे रहे है पत्-पटरा जैसा कुछ दिखाई दे रहा है एक गली भी दिखाई दे रही है।

यहां पर एक महिला दिखाई दे रही है जो झुकी हुई है यह साडी पहनी हुई है तथा माथे पे पीले व लाल रंग की टिका लगाई हुई है।

यहा पर गड्ढा किया हुआ है जिसमे एक व्यक्ति लाल कलर का टीशर्ट पहन कर खड़ा हुआ है पीछे एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है बहुत से घर दिखाई रहा है तथा--

अभी टाईल्स जेसा ही कुछ बिछा हआ है जिसमे छोटी छोटी लाईट लगी हुई है जो जल रही है पीछे एक गेट दिखाई दे रहा है।

यहां पे कुछ व्यक्ति दिखाई दे रहे है कुछ व्यक्ति बैठा हुए है तथा एक व्यक्ति लेटा हुआ है अपने दोनों हाथो को ऊपर की और किया हुआ है तथा पैरो को एक मोड़ा हुआ है।

यहां पर भी एक नाव दिखाई दे रहा है जिस पर एक व्यक्ति बेठा हुआ है तथा वहा नाव चालक दिखाई दे रहा है ऊपर कुछ झंडी जैसा लगाया गया है।

पीछे पानी भी दिखाई दे रहा है पानी स्थिर दिखाई दे रहा है पानी का कलर सफेद दिखाई दे रहा है ऊपर आकाश दिखाई दे रहा है नाव ऊपर एक घर जैसा कुछ दिखाई दे रहा है जिसका कलर ब्लू है।